इसमें यहाँ पीछे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

इस फोटो में एक बड़ा सा गार्डन नजर आ रहा हैं जिस गार्डन के आजू बाजू चारो तरफ एलईडी लाइटस लगी हुई है जिससे की काफी अच्छे रोशनी यहाँ पे आ रही हैं।

फुट में एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है जो की श्री नरेन प्रसाद प्रशासनिक विज्ञान भवन है इस भवन की बिल्डिंग दो मंजिला--

फोटो में बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है इस बिल्डिंग की बेसमेंट में एक बर्तन भंडार नजर आ रहा जिस बर्तन भंडार--